ये सामने आप देख रहे हैं बैंक आफ बडौदा और यह देखिए यहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा है केजीएन सहज जन सेवा केंद्र और यहाँ पर एक आदमी --

सामने आप देख रहे हैं बहोत बड़ा सा मैदान है जोकि बहोत ज्यादा हरा है और इधर देखिए मिट्टी भी है और इधर देखिए जो फर्श है उस पर टाइल्स लगी हुई है और वहां पर एक आदमी --

पहना हुआ है और नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और नीले रंग की जींस पहनी हुई है और यहां पर सामने एक आदमी है जो जैकेट पहना हुआ है उसने हाथ में कुछ सफेद रंग का सा अ कपड़ा लिया हुआ है ।

सामने आप देख रहे हैं स्तूप है जो कि आ भूरे रंग का है और अगल-बगल बहुत सारे घने पेड़ है उधर देखिय मंदिर की चोटी दिख रही है और इधर देखिए लाइट भी दिख रही है।

ये आप देख रहे हैं मंदिर का द्वार है और यहां पर देखिए बहोत सारे आदमी उधर खड़े हुए हैं। उधर से एक आदमी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जा रहा है। उधर देखिए --

और यहाँ पर देखिए तीन ऐसे गुंमज टाइप बने हुए हैं और सब पर चांद बना हुआ है और अगल बगल रंग बिरंगे परदे लगे हुए हैं।

और यहां पर देखिए स्कूटी खड़ी है मोटरसाइकिल खड़ी है और यहां पर देखिए जो सीढ़ी जाने वाला रास्ता है उधर सामने देखिए अंदर बहौत सारी लाइट भी लगी हैं।

और जिन्होंने अ जिसमें एक सिख औरत है वो स्कर्ट पहनी हुई है स्वेटर पहना हुआ है और आदमी ने जैकेट पहना हुआ है ।

और पीछे देखिए प्लस का अ चिन्ह बना हुआ है और जो दरवाजा है वो काले रंग का है।